नीचे कुछ डमी खड़े है जिनके सर पे कुछ के हेयर नहीं हैं कुछ के है।

ये एक वाटर पार्क है। जहाँ पे स्लाइड है और स्लाइड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

कुछ पन्निया भी रखी हुई है ऊपर के साइड एक बोरी पड़ी हुई है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है।

जो पानी से हमें बचाता है डूबने से और एक इंसान खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी --

यहाँ पे एक हॉल है और सामने एक स्टेज सजाया गया है जहाँ पे एक बड़ा-सा सोफा रखा हुआ है।

और यहाँ पे एक थाली में प्याज कटा हुआ रखा है कुछ सामान भी है। यहाँ पे सॉस की बाॅटल वगैरह रखी है। एक बाइक खड़ी है।

मकान बने हुए हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग इधर खड़े हुए हैं। पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।